पूरे हॉल सिनेरी लगी हुयी है कुछ मे चित्र बने हुये है हॉल मे एक आदमी टेबल को पकड़े हुए है।

पीछे कारपेट बिछा हुआ है। और बगल मे भी एक कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिम है जिम में एक चेयर है काफी सारे डंबल रखे हुए है फॅन लगा हुआ है काफी सारी लाईट्स लगी --

है। गणेश जी की झालर भी दिखाई दे रही है। दुकान मे काफी सारा सामान लगा हुआ दिखाई दे रहा।

लकड़ी का सेंटर मे डिज़ाइन दिखाई दे रही है जिसमे एक --

सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है कोई आदमी वहा खडा है दोन तीन आदमी खडे है जिनके जुते दिखाई दे रहे है।

फोटो मे दिखाई दे रहा है जिनमे काफी सारे फ़ैन लगे हुए है।

बोर्ड लगा हुआ है। जिसमे एक प्लग फसा हुआ है। उसके ऊपर दो-एक मशीन लटकी हुई है। दीवाल में ऊपर चारों ओर टाईल्स लगे हुए है और एक ए_सी भी दिखाई दे--

जिम का कलर पूरा लाल दिखाई दे रहा है। बलून दिखाई दे रहे है। एक ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है।

लोटें दिखाई दे रहे है। और नीले रंग की पन्नी भी दिखाई दे रही है।

दुकान है जिसमे एक टेबल है जिसमे नीचे सफ़ेद कलर की पन्नी बिछी हुई है और चीनी मिट्टी के फ्लावर पॉट रखे हुए है।